और पीछे एस_बी_आई का बोर्ड लगा हुआ है ये तीन मंजिला बिल्डिंग --

और एक अंकल ने यहां पर चश्मा पहना है।

कुछ तारे दिखाई दे रही हैं एक बिजली का खंभा दिखाई दे रहा और यहां पर कुछ शीशे भी लगे ब्लैक रेलिंग लगी हुई है।

और यहां पर ब्राउन कलर के टेबल रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर--

आ आसमान जो हैं बिल्कुल अंधेरा हैं और ब्लैक हुआ हैं और यहाँ पर कुछ पेड़ भी हैं कुछ लोग भी हैं और एक--

व्हाइट कलर में यहां पर पर्दे लगे हुए हैं और शीशे भी लगे हैं।

कायल के कुछ पेड़ यहां पर जो बहोत ही सुंदर और बहोत ही प्यारे लग रहे हैं।

एक मंजिल की यहां पर शॉप दिखाई दे रही है जिसमें व्हाइट कलर और गाजरी कलर का।

और बिजली चमक रही हैं लाइट्स चमक रही है और यहां पर दो बड़े बड़े सोफे भी रखे गए है जो व्हाईट कलर के हैं और यहां पर जो--

और यहां पर पीछे बहुत ही आसमान साफ है और अच्छी पहाड़ियां दिखाई दे रही है और इसके बगल में दो बड़ेबड़े।

और यहां पर नाशपती दिखाई दे रही हैं और यहां पर--

यहां पर हमें पलम भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर संतरे भी दिखाई दे रहे हैं और केले भी दिखाई दे रहे हैं एक रोड भी दिखाई --

कुछ बैलूंस यहां पर लगे हैं जो ब्लैक पीले लाल और--